यह लाइंस क्लब का मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का शिविर लगा हुआ है जिसमें--

यह एक मोटरसाइकिल का दुकान है जिसका नाम है मेहता इंटरप्राइजेज ।

कुछ लोग बैठे हुए हैं और आपस में गप कर रहे हैं सामने मैदान में कुछ लोग--